देखो इस फोटो में ना चुन्नी का इस्तेमाल करके डेकोरेशन की गई है कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ठीक है यहां पे काफी सारी चीजें रखी है सेनेटरी पैड दिख रहे हैं।

और नेल पॉलिश वैगरह भी दिख रही है इसमें --

अह शर्ट पहनी है सफेद कलर की और एक ब्लू कलर की जींस पहनी है।

टूटी है ठीक है और यहां पर सोप डिस्पेंसर है शावर है।

एक लगा हुआ यहां पे सिलेंडर जो आग बुझाने के काम आता है।

कल काफी बढ़िया मतलब बढ़िया लग रहा है देख के की भाई मजेदार है।

इस फोटो में कुछ फूल दिखाई दे रहे है।

सामने की तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

साइड में कार ए_सी की शॉप दिखाई दे रही है ऊपर लिखा है टाटा मोटर्स शोरूम हैरियर और एक कार का फोटो लगा है।

और थोड़ी पीछे देखिये तो कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक टेबल है जो पिंक कलर का है अ दिखाई दे रहा है कुछ चेयर्स दिख रही है जो वाइट कलर की है।

बना हुआ है दीवार पे कुछ पौधे लगे हुए हैं।

ठीक है दीवार पर कुछ पेंटिंग्स लगी है स्विच बोर्ड दिखाई दे रहे है अ कुछ यहां पे ये छोटे छोटे स्टूल दिखाई दे रहे--

नीचे एक दुकान है यहां लिखा है यहां सभी प्रकार के--

सामने लिखा है कल्याणा ऑटो स्टोर नीचे कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं एक कुर्सी दिखाई दे रही है।